मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बीच में एक--

इस चित्र में एक डोसा और एक कटोरी में--

इस चित्र में एक खेल का--

रेलिंग भी दीवार में लगी हुई--

नजर आ रही हैं और--

काम करते हुए और खड़े हुए--

यह चित्र एक मंदिर का--

दो आदमी नजर आ रहे हैं ।

और कुछ लोग खड़े और--

एक कच्ची जमीन पर छोटे-छोटे--

पौधे और दो बड़े पेड़ लगे हुए नजर--

बहुत सारी घास भी लगी हुई--

नजर आ रहे हैं और बड़ी सी टेबल--

एक पेड़ भी लगा हुआ है और--

इस चित्र में एक लाल रंग का--

यहां पर लाइट भी--

और कुछ बिल्डिंगों में काम भी--

बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है ।

जिसके अंदर एक दही पर एक लड़का।--

इस चित्र में एक बड़ी सी --

चित्रह में एक बड़ा --